चार चक्का गाड़ी खड़ी है वाइट कलर का ग्रे कलर का ये सामने कुछ औरत लोग चल के जा रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा गाड़ी घुसने वाला है यहां पे बाहर एक आदमी खड़ा है।

इसका नीचे कुछ पुरोहित लोग खड़ा खड़े है उसके पास कुछ आदमी आदमी लोग --

मिट्टी उखाड़ने वाला बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा है जो मिट्टी उखाड़ रहा है पास में एक --

यहाँ पे एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारा बड़ा-बड़ा पेड़ है।